यहाँ पे एक बैनर है बैनर जो की काफी बड़ा है और उसमे रेड अ येल्लो कलर और रेड कलर से कुछ लिखा गया इसमें लिखा गया है कुनाल वे-ड्राई क्लीनर मतलब की यहाँ पे ड्राई क्लीन किया जाता है कपड़ों को जो नीचे के साइड में एक बैनर कपड़े टाइप का बना हुआ है नीचे के साइड में शटर सी बनी हुई है जिसमे की --

और रेड कलर से पोते गए हैं आस पास में जो रॉलिंग वो वाइट कलर और रेड कलर से हैं बहोत सारे पेड़ लगाए गयें हैं और एक बिजली का खम्बा लगा हुआ है जिसमें रेड है।

उसमे व्हाइट कलर पोटा गया है सामने के रैलिंग लगाई है जो की जालीदार है और लोहे की है सामने के घर में एक अ-बाइक खड़ी हुई है सामने एक गेट लगाया गया है जिसमे लोहा का है और ये अभी खुला हुआ है।

सामने की ओर में एक टंकी दिखाई दे रही है जिसमें की पानी भरा हुआ है पानी सप्लाय किया जाता है वह टंकी दिखाई दे रही है।

और यां पे एक खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। खिड़कियाँ जो हैं वो नीले कलर से पोती गयी हैं। सामने की ओर में बिजली का खम्भा है बिजली के खंभे मे लाइट्स लगी हुई हैं। में बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बिजली का खम्भा भी आ रहा है। यहाँ रायलिंग्स भी लगायी गयी हैं जो की काले काले कलर से जो पोती गई हैं। पीछे के घर में कुछ रायट्स की लाइन गयी है।